इमेज में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी ब्लू दिखाई दे रहा है हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और--

इस इमेज में स्वामी मंदिर सा दिखाई दे रहा है। उसके बाहर एक लड़का दिखाई दे रहा है। बहुत सारे अशोक के पेड़ लगे हुये दिखाई दे रहे हैं। ऊपर दो झंडे दिखाई दे रहे हैं।

यामध्ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसपे लिखा है एम.ए.वाय.ए माया बूक सेंटर बंगाली मे एक पोस्टर दिख रहा है उसपे सोना सोल्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर दो जीपे दिखाई दे रही है लाइट रेड कलर की लाइट जली हुई दिखाई दे रही है उपर पूल दिखाई दे रहा है पूल के उपर बहुत सारे खंबे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल में बहुत सारी कार रखी हुई है हम्म जो की सामने से खुली खुली मतलब खुलिसी है कुछ --